बिल्डिंग के आगे एक पेड़ भी है पेड़ भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं बहुत बढ़ियां लगते हैं।

रंग पैंट भी किया हुआ है बहोत अच्छे लगते हैं देखने मे। मंदिर मे ग्रिल भी बोहोत अच्छे से लगाये हुए हैं। देखने में बहोत खूबसूरत लगते हैं।

यहाँ पे सिटी रिक्शा देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। शीशा भी चमकते हैं बहुत अच्छे से।